लकड़ी के टेबल पर एक पेपर भी रखा हुआ है एक चाबी का गुच्छा भी दिख रहा है।

पर एक गोल सर्कल में एक लोगों भी बना हुआ है।

ने की तरफ खूब सारे घर भी नजर आ रहे हैं।

यह पिक्चर मॉल के अंदर की है जहां जमीन पे टाइल्स लगी हुई है।